यह एक दुकान है यहा काफी सारी चिजे मिलती है जैसे स्प्राइट पानी जूस --

यह एक लड़का खड़ा हुआ है जो झाड़ों को पानी डालता हुआ दिखाई दे रहा है।

काले कलर की प्लेट है इसमे कटोरिया भी रखी हुई है इसमे सब्जी भी है और चम्मच भी है।

यह एक किराना दुकान है यहाँ काफी सारा समान मिलता है तेल साबुन और बहुतसी चिजे मिलती है यहाँ कुछ कबोर्ड मे चीजे रखी हुई है।